और ऊपर की ओर फोर सीलिंग में नीली और लाल लाइट जलती हुई भी दिखाई दे रही है और एक टेबल पे मैगज़ीन रखी है।

एक दरवाजे पर एक गणेश जी की और एक माता जी की तस्वीर बनी हुई भी दिखाई दे रही है।

ये एक रिपेयरिंग दुकान दुकान दिखाई दे रही है ये एक मेजर रिपेयरिंग --

यहां पर तीन आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और दो ड्रम भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें पानी भरा जारा --

यहां पर एक काली कलर की टंकी भी रखी हुई दिखाई दे रही है और बाहर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर दुकानों के बाहर कुछ बाइक और साइकिलें भी खड़ी हुई नजर आ रही है और ढाबे के पास में किराने की भी दुकान है।

यहां पर एक पेड़ जो की पिंजरा जिसके आस पास पिंजरा लगा हुआ है उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है।

ये किसी गार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ नजर आ रहा है।

उसपे सफेद कलर की बेडशीट बिछी हुई दिखाई दे रही है।

और सामने वॉल पर दो तस्वीरे लगी हुई भी दिख रही है।

मंच की तस्वीर दिखाई दे रही है।